जहां पर आने वाले अलग अलग वाहन--

बहुत खूबसूरत ये पहाड़ी का एक चित्र है।

जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके

एक गहरा खड्डा खोद रही है।

कंपनी के टायरों की दुकान में सामने कुछ टायर लटके हुए में नीचे कुछ टायर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

टॉफियों के साथ बैठे हुए हैं।

किसी डॉक्टर का क्लीनिक लग रहा है।

देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये मोटरसाइकिल किसी मैकेनिक की दुकान पर--

जो दो और भी कुछ चीजे खड़ी हुई है ऊपर बादल भी--